बहोत दूरी पर है अंधकार है कुछ दिखाई--

इस तस्वीर में मुझे दिख रहा है--

इस तस्वीर में मुझे दिख रहा है कि टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए--

ना पिलर दिखाई दे रहा है एकदम अ दूरी पर हल्का-सा व्हाइट टाइप का दिखाई दे रहा --

और अंदर में स्पष्ट रूप से क्या है क्या नहीं है ओ मुझे दिख नहीं--

लग रहा है कि दो टेबुल जो है वो--

कुछ बने हुए हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे र--

उसका स्काई कलर का सट पेह पहने हुए हैं वो आगे से और भी क्या है वो स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लग रहा है कि एक हाई टेंशन का जो तार जो है पूरा चारों तरफ --

बीच है अस्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है और पर्दा टंगा हुआ है।

और एक ग्रीन टाइप का गेट भी लोहे का दिखाई दे रहा है उसके आगे जो है व्हाइट टाइप का भी--

इस तस तस इस तस्वीर में मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बैठे हुए है।

और बहुत अ विकराल अ जो देखने का है लेकिन पानी है।